यह एक दुकान है जिस पर बुक वूक मिलता है उम्म जो बेच रहा है एक उ बॉय है।

और एक बाइक भी है जो बाइक के साइड में आदमी बैठा हुआ है।

आदमी गाड़ी बोहत --

यह एक बोहोत बड़ा उमम बोहोत बड़ा --

कोई काम कर रहा है और आ जा भी रहा है और कोई आ भी रहा।

इधर एक दोठो दो टोटो खड़ी हुई है। जिसपे एक और एक नीचे लेडीज खड़ी हुई है और उधर एक जेंट्स और एक --